इस पेट्रोल पंप पर काफी भीड़ लगी हुई है लोग पेट्रोल लेने आ रहे हैं एक ऑटो रिक्शा भी लगा हुआ है।

उस मस्जिद के सामने छोटे छोटे टालियों के घर हैं और उसके पास में एक छोटा सा तलाब है।

ये पिक्चर एक मोबाइल दुकान का है उस मोबाइल दुकान के एक रैक है जिसमें छोटे-छोटे कीपैड फोंस --

इसके पास बहुत सारे अलग अलग रंग के अलग अलग कलर के--

किसी रोड से किनारे बसे छोटे से दुकान का है जिसमें बहोत सारे खाने पीने की चीजे लगी हुई है।